ऐसी जगहों पर घूमने में जहां पर झरना वगैरह हो नहाते हैं खेलते हैं कूदते हैं।

यहाँ पार्क में डायनासोर का टैटू लगा हुआ है बड़ा सा इसको बच्चा बहुत ध्यान से देख रहे हैं।

इसके साथ सेल्फी ले रहे हैं लोग खेल कूद रहे हैं बहुत अच्छा लगता है ऐसी जगहों प जाना जहां पर --

आ सर्विस इसकी ठीक है। बच्चा अपना बाल कटवा रहा अच्छे तरीके ध्यान से। चारो ओर नाई इधर कर रहा है। एकदम स्ट्रेट देख रहा है।

जल के अंदर अपना एन्जॉय कर रहे हैं। जैसे लग रहा है बादल एदम नदी में समा रहा है इस तरीके का लग रहा। बहोत खुबसूरत नज़ारा है बहोत ही लवली है।